वहा पे मकान की तरह बना हुआ है जिसके ऊपर से लाइट के तार गए है रोड के इस तरफ छोटे छोटे पेड़ लगे हुए है।

यहाँ पर सामने काफी सारा ग्राउंड दिखाई दे रहा है ग्राउंड के बाजू में--

यहाँ पे सामने काफी सारा मैदान दिखाई दे रहा है ये एक घर की तरह दिखाई दे रहा है साइड में वहां पे काफी सारी चेयर डली हुई है नीचे।

यहा पे काफी सारा मैदान दिखाई दे रहा है जहा पे छोटी छोटी घास लगी हुई है कुछ बड़े बड़े पेड़ लगे हुए --

सामने अलमारी की तरह भी रखी हुई है नीचे पक्का फर्श बना हुआ है पीछे काफी सारी दिवाली बने हुए है जो शाइनिंग कर रही है वहां पे ऊपर --

यहां पे एक अम्म हॉल की तरह दिखाई दे रहा है सामने कुछ घर की तरह डिजाइन में बने हुए है।

वहाँ पे रेलिंग की तरह भी दिखाई दे रहा है लाइट के खंबे भी दिखाई दे रहे है डीपी है और काफी बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे पीछे हल्के हल्के से --

यहां पे बहुत बड़ा मंदिर बना हुआ है जिसमें पीछे वाले में गुम्मट बनी हुई सामने वाले में बालकनी की तरह चारों तरफ से गोल है।

की तरह दिखाई दे रहा है बाजू में भी मंदिर बना हुआ है इसके बाजू में केल का--

यहां पे काफी सारा मैदान दिखाई दे रहा है मिट्टी भी है उसमें छोटे छोटे पौधे लगे हुए है व्हाइट व्हाइट रेलिंग सी बनी हुई है।

मैं हरा हरा ही दिखाई दे रहा है पेड़ भी है बादल दिखाई दे --

और पीछे डिजाइन में पेड़ लगे हुए हैं वहां पे साइड रेलिंग भी है ऊपर बादल है।